एक चौराहा जिसमे एक बड़ा भवन है जिसकी खिड़किया काँच की है चौरासे के आस पास कुछ छोटे बड़े पेड़-पौधे है और चौराहे के अगल--

किसी घने जंगल के पीछे एक छोटा सा रास्ता रास्ते के किनारे एक लोहे के बार्डर लगा हुआ है बार्डर के बगल मे कुछ पेड़ पौधे है।

वह और कुछ केले के पत्ते रथ के नीचे भी कुछ व्यक्तियों की भीड़ है|

चार पिलरों से टिका हुआ है सामने में एक बड़ा स ट्रक जो पेट्रोल डलवा रहा है ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है